चित्र मे बोहोत ही स्वादिष्ट चोकलेट से बनी हुई सारी डिशेस ओरीओ बिस्किट्स किटकैट चोकलेट कैडबरी चोकलेट --

बाकि का रंग हल्का आसमानी रंग है| आस पास पक्की सड़क है | एक आगे टेबल भी दी गई है लाइट्स भी हैं।